और कुछ खाने वाले चीज बॉल्स दिखाई दे रहे प्लेट काले रंग का है और उसके नीचे का मेज व्हाइट कलर का है।

और हमें एक बालकनी से दूसरी बालकनी दिख रही है जहां पर ग्रीन कलर का कारपेट है और बहुत सारे पौधे हैं।

यह एक फल का ठेला है जिसमें हमें अमरूद अम् संतरा तरबूज और सेब दिखाई दे रहे हैं एक तराजू भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहोत सारी गाड़ियां दिखाई दे रहे हैं पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं कुछ घर दिखाई दे रहे--

और कुछ होटल्स भी दिखाई दे रहे और हमे वायर्स दिखाई दे रहे और इसमें हमे बादल भी दिखाई दे रहा है।

आसमान दिखाई दे रहे है और पहाड़ के पीछे भी शायद हमें कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है।

यह एक पंडाल का फोटो है पंडाल के अंदर बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

और पंडाल के बाहर भी कुछ आदमी दिखाई दे रहे पंडाल पर वाइट कलर का कुछ टंगा हुआ है।

यह एक कु किराने का दुकान है जिसमें हमें एक टेबल दिखाई दे रहा है टेबल कांच का दिखाई दे रहे हैं।

कुकीज दिखाई दे रहे हैं हमें वेफर्स दिखाई दे और हमें बहुत सारे अं सॉसेज के डब्बे भी दिखाई दे रहे हैं और इसमें कुकीज भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक गुफा का फोटो दिखाई दे रहा है जिसमें हमें खुले से खिड़कियां दिखाई दे रहे है।

यह एक लाइब्रेरी का फोटो है जिसमें हमें बहुत सारे टेबल्स दिखाई दे रहे हैं और कुर्सी दिखाई दे रही है दीवारों पर बहुत सारे चित्र दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारी पीछे बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं और हमें एक जमीन दिखाई दे रही है जिसमें अह छोटे छोटे घास उगे हुए हैं।

यह एक स्कूल का फोटो जैसा दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे टेबल लगे हुए हैं टेबल के ऊपर आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान रखा --

इसमें एक घड़ी दिखाई दे रही है और कुछ किताबें दिखाई दे रही है उम्म ऊपर एक अह डब्बा दिखाई दे रहा है।

इसमें बहोत सारा लाइट दिखाई दे रहा है और दो तीन पंखे भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक कारपेंटर का दुकान है जिसमें हमें दो टेबल दिखाई दे रहे हैं।

और उसी कलर का व्हाइट एंड ब्लू कलर का हमें तकिया दिखाई दे रा है बेड के इस साइड एक टेबल दिखाई दे रा है।

यह फोटो एक पेट्रोल पंप का है जहां पर कुछ लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं कुछ हमें गाड़ियां दिखाई दे रहे --

यह एक पार्क का फोटो है जिसमें कोई भी नहीं है यह पार्क खाली --

यहां पर एक को साइकिल दिखाई दे रहा है एक टेबल दिखाई दे रहा है और कुछ पेड़ पोधै दिखाई दे रहे हैं।

इस के में कांच का उम् दरवाजा दिखाई दे रहा है इसके आगे एक सीढ़ी दिखाई दे रही है।

यह एक बिल्डिंग का फोटो है जिसका नाम उम्म अह करियर इंजाइट कोचिंग इंस्टिट्यूट है।

यह एक बिल्डिंग का फोटो दिखाई दे रहा है जिसके आगे बहुत सारे झूले दिखाई दे रहे हैं।

वो ब्लू कलर का टी शर्ट पहना हुआ है और पीछे वाला आदमी आईने में देख रहा है और एक आईना दिखाई दे रहा है हमें।

एक बेड दिखाई दे रहा है एक पीली कलर की कुर्सी दिखाई दे रही है एक खिड़की दिखाई दे रहा है एक आईना दिखाई दे रहा हैं।

बिल्डंगे काला और उम्म सफेद कलर की दिखाई दे रहे हैं बिल्डिंग के आगे हमें तीन चार ट्रक दिखाई दे रहे हैं।

यह एक जिम का फोटो दिखाई दे रा है जिसकी दीवार लाल एवं पीली है।

यह एक कुकीज का दुकान है जिसमें हमें एक रैक दिखाई दे रहा है।

यह एक बिल्डिंग है जो की व्हाइट कलर का है और इसमें बहुत सारे खिड़कियां दिखाई दे रही है।

और कुछ लॉबी भी दिखाई दे रहे हैं बिल्डिंग के बाहर एक कचरे का उम्म अ गाड़ी दिखाई दे रहा है और उसके बाजू में दो गाड़ी दिखाई दे रहे हैं।

हमें इस पे बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं और कुछ बाबू दिखाई दे रहे हैं।

एक महिला दिखाई दे रही है उँ जो की बहोत सारा सामान लेकर जा रही है उँ और हमें हेलीपैड के पीछे पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

और यह गुफा बहुत ज्यादा पत्थर से बनी हुई है जो कि बहुत ज्यादा ही कड़क दिखाई दे रहे हैं।

और इस बेकरी के अंदर घुसते ही हमें एक मेज दिखाई दे रहा है जिसमें अलग अलग प्रकार के केक और पेस्ट्री रखी हुई--

एक ए_सी दिखाई दे रहा है एक फ्रिज दिखाई दे रहा है और कुछ हॉस्पिटल की समान दिखाई दे रही हैं।

इसमें हमें दो बोर्ड दिखाई दे रहे हैं जो वाइट एंड ब्लैक कलर का है।

कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं और यहां पर धूप आ रही है यहां पर ऊपर कुछ लगा हुआ है बोर्ड के जैसा।

यह एक वो स्टेज दिखाई दे रहा है जिस पर एक बड़ा सा सोफा लगा हुआ है।

कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं और स्टूडियो के बाहर दो कुर्सियां दिखाई दे रहे बहोत सारे डब्बे दिखाई दे रहे --